ओर यहां पे एक बिल्डिंग भी दिख रही है।

और यहां पे पानी की बॉटल्स दिख रही है बिजली की तारे दिख रही हैं।

आदमी दिख रहे हैं और यहां बार लिखा हुआ दिख रहा है छत पे लाइट्स दिख रही हैं रस्सियां दिख रही हैं।

यहां पर बसे दिख रही है। लोग दिख रहे हैं। एक आदमी ने पेट पे बैग पहना है और हाथ में भी एक बैग पड़ा है।

जमीन दिख रही है स्विच बोर्ड दिख रहा है।

मैट दिख रहा है एक बैग भी दिख रहा है।

यहां पे आसमान दिख रहा है आसमान में बादल दिख रहे हैं।

ग्रिल दिखाई दे रही है सीढ़ियां दिखाई दे रही हैं एक पॉट दिखाई दे रहा है बहोत सारी मशीनस दिख रही हैं।

बहुत सारे पहाड़ दिख रहे हैं।

दीवार दिखाई दे रही है दीवार में पोस्टर दिखाई दे रहा है ए_सी दिखाई दे रहा है और यहां फर्श भी दिख रहा है।

और विंडोज दिख रहे है विंडो में शिशा दिख रहा है।

यहां पे एक बोर्ड लिखा है जिसमें एच_डी_एफ_सी बैंक लिखा है।

और ईंटों की दीवार दिख रही है।